यह कोई निर्माण स्थल है। जहाँ पर बहुत बड़ा जनरेटर नीले रंग का लगाया हुआ है।

तरह का पठारी हिस्सा यहाँ क्रेन के द्वारा खुदाई हो रही है और पिलर लगाया जा रहा है।

पेड़ लगा हुआ है । चारो ओर बाउंड्री है | जिसपे सुविचार लिखे --

ये कोई मेकेनिक की दुकान लग रही है। जहाँ बहुत से दो पहिया वाहन दो ओटो रखी गई है।

यह एक वाटर पार्क है। जिसका नाम ओसियन वर्ल्ड वाटर पार्क वाटर पार्क --

यहाँ बहुत से बैलून नजर आ रहे हैं चारों तरफ पीले और लाल रंग के।

तैरने के लिए एक एक मंजिला इमारत-सी बनी हुई है। जिसमें स्लाइड करके स्विमिंग पूल --

बच्चो का खेलने का मनोरंजन का साधन दिख रहा है। साथ ही स्लाइडिंग के लिए चढ़ने के लिए छोटी सी सीढ़ी बनी हुई है।

यह एक एक मंजिला इमारत है होटल की तरह दिख रहा है ।

पीछे जंगल है। ये जो पुल है यह बांस की बनी हुई है। जिसके नीचे शेर विश्राम कर रहा है।